उत्सव का माहौल बना रही है।

जिस पर स्टार एंड अउध लिखा हुआ है।

और दो कुर्सियाँ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

चित्र में एक बड़ा स्क्रीन डिस्प्ले है जिसके ऊपर लेकर जी--

जिसकी निचली मंजिल पर दुकानें हैं और ऊपर की मंजिलों पर--

खिड़कियां है सड़क पर कई मोटरसाइकीलें और--

बैंक्वेट हॉल या इवेंट वेन्यू की तस्वीर हैं जो किसी समारोह--

इसमें गुलाबी और काले रंग की कुर्सियों के साथ एक लंबी मेज दिखाई दे रही है।

रंगपुर टाउन हॉल का को दर्शाता है।

जलाशय दिखाई दे रहा है अग्र भूमि में एक जालीदार भाग--

यह तस्वीर एक कार धोने वाले क्षेत्र को दिखाती है। इसमें एक काली कार --

दो व्यक्ति भी दिख रहे हैं जो के पास है।

बोहोत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हैं जहां पर सब साफ सफाई--

जो सारी दुकैनें मकैनिक की हैं।

दुकान की है जिसमें तीन गुब्बारे--

पार्किंग का दिखाई दे रहा है।

बाइक भी दिखाई दे रही है।

अपने संदेश पोस्ट करने आते हैं।

तीन और तीन से अधिक मशीने दिखाई दे रही हैं।

जो कि दूसरे माले पर है और ये सफेद रंग की मशीने है।

जैसे एक म्यूजिशियन का कमरा हो जो यहां पर--